बहोत ही सुंदर सा रस्ता है यहां से सब बहोत ही प्यार से और--

एक बहोत सारे तेल के डब्बे रखे हुए हैं तकरीबन बहोत सारे हैं जो हम गिन भी नहीं सकते यहां पर एक बुजुर्ग अंकल यहां से जा रहे हैं एक लड़का यहां पे फोटो खींच रहा है।

अलग-अलग दिशा में पेड़-पौधे जमे हुए हैं एंड अलग-अलग फ्लावर्स दिख रहे हैं इसमें।

ये एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा रेस्टोरेंट है जिसमें बहुत अच्छी पेंटिंग्स की गई है पेंटिंग देख के ही बहुत सुंदर लग रहा है।